इस इमेज में यहां पर वाटर पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग नहा रहे--

जूस का डेकोरेशन न्यू लग रहा है और एक स्कूटर भीं दिखाई दे रहा --

इस इमेज में यहां पर एक पुलिस चौकी दिखाई दे रही --

बाहर एक सीढ़ी भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा --

यहां पर दो लोग इंक्वारी कर रहे हैं।

और झंडा भी नजर आ रहा--

और शो प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं।

सामने छोटा सा पार्क भी है।

इस इमेज में यहां पर एक कमरा दिखाई दे --

और बैलून का डेकोरेशन भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर मकान दिखाई दे रहे --

इस इमेज में एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने बालों की कटिंग करी हुई --

और लाइटें भी जलती नजर आ रही है।

यहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पेड़ भी।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

इस इमेज मे यहाँ पर एक ऑफिस दिखाई दे --

और कुछ लोग काम करते नज़र आ रहे है।